और कुछ फोटोज रखे हुए है जो येल्लो कलर के है ग्रीन कलर के है और ब्लैक कलर के है।

और बहोत सारे पेड़-पौधे दिख रहे है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के है और कुछ पौधे ग्रीन कलर के है।

और तीन स्टैंड बने हुए है और कुछ फूल है जो येलो कलर के क्रीम कलर के व्हाइट कलर के है ऑरेंज कलर के--